एक क्रिसमस ट्री है और ये पूरा डेकोरेट किया गया है और साइड पे एक --

और कुछ लोग ऊपर किनारे पर रखी है और वहां पर एक आइसक्रीम वाला भी है और यहां से कोई बेल पूरी बेच रहा है।

साइड से एक बच्चा खड़ा है जिसने रेड और येलो कलर के कपड़े पेहने हैं।

और एक छोटा बच्चा है जिसका सिर्फ हाथ दिख रहा है और टाइल्स है पिंक और व्हाइट --

यह कोई गांव लग रहा है और यहाँ पे पेड़ हैं।

और हम्म यहां पे घास भी है यहाँ पे वहां बीच में नेट लगाई हुई है बीच में--

अ वो उन्होंने रेड कलर का शर्ट और ब्लैक कलर का पैंट पहना हुआ है।

और कुछ बोट्स लगे हुए हैं दीवार पे और एक क्लॉक भी नजर आ रहा है।

यह एक दुकान है और यहाँ पे अ एक आदमी किराना बेच रहा है।

ऊपर एक लाइट आ रही है जो कि आ इस आदमी पर पड़ रही है और दुकान में भी लाइट है हम्म--

और एक स्कूटी भी नजर आ रही है और कुछ साइड में अ कुछ प्लांट्स भी नजर आ रहे है।

यह दरिया है और वहाँ पे बोट्स चल रहे हैं उन बोट्स में कुछ आदमी नजर आ रहे हैं।

चार बोट्स अ है दरिया में एक मूर्ति भी है पहाड़ भी है।

अ पेड़ है और किनारे पे कोई भी खड़ा नहीं है।

और ये पत्थर भी दिख रहे है और ये नदी में पानी जा रहा है।

और पेड़ दिख रहे है जो उसकी इसने छाव बना र--

यह एक दुकान है और यहाँ पे तंदूर चायनीज एंड बिरयानी लिखा हुआ है।

है और लाइट अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है खिड़कियों से।

और एंट्री नजर आ रही है और यहाँ पे एक टूल जैसा कुछ है।

यह एक बाजार है और यहाँ पे कुछ दुकानें हैं और यहाँ पे एक बोर्ड भी है और एक आदमी खड़ा है।

और यहाँ पे तीन स्कूटी भी हैं और एक साइकिल भी नजर आ रहा है।

ये लडकिया यहाँ पे हैं ये छोटी लड़कियाँ डांस सिख रही हैं और दीवार पे बैलून्स लगे हुए हैं।

बैलून्स ऑरेंज ग्रीन और व्हाइट कलर के है दीवार पे एक अ व्हाइट कलर का कपड़ा हुआ है।

ऑरेंज कलर रिफ्लेक्ट हो रही है और इन लड़कियों ने डिफरेंट कलर्स के कपड़े पहने हैं रेड पहना है पिंक पहना है।

बीच में एक अ कोई थम्स सा लगा हुआ है आगे स्टेज है और माइक भी लगी हुई है।

यह एक रूम है और यहाँ पे दीवार पे कुछ ल फ्रेम्स लगे हुए हैं और बत्ती बत्ती के होल्डर्स लगे हुए हैं।

और एक और टेबल है और एक अ पौधा है हम्म एक लाइट आ रही है।

ये एक शॉप है और ऊपर बैलून्स लगे हुए है और अ व्हाइट कलर के लाइट्स लगे हुए है टेबल पे--

और दूर दूर तक लोग हैं बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं एक बोर्ड खड़ा हैं।

ये यह गार्डन है और यहां पर पेड़ है पौधे हैं और यहां पर एक गेट भी है।

और धूप खिली हुई है और एक पोल यहाँ पे खड़ा हुआ है।

यह एक रास्ता जा रहा है जहाँ पे दो बाइक्स हैं अ एक जा रहा है दूसरा आ रहा है।

रेड कलर दो अ एक बाइक है ब्लैक कलर की एक बाइक है एक बाइक पे दो आदमी सवार है दूसरे पे एक ही आदमी सवार है।

यह दरिया है और यहाँ पे एक बंदरगाह है और यहाँ पे एक उसमें एक कश्ती भी नजर आ रही है।

अ इलेक्ट्रिक पोल्स भी दिख रहे हैं और पेड़ भी है यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ है सब --

कुछ ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है और यहाँ पे धूप खिली हुई है।

एक कॉनफेरेन्स यहाँ पे हो रही है व्हाइट टेबल पे एक ये लोक कुछ डिस्कस कर रहे है।

और ये लोग कुछ डिस्कस कर रहे हैं इन्होंने डिफरेंट कलर कपड़े पहने--

उसने ग्रे कलर का स्वेटर और शर्ट पहना हुआ है और ब्लैक कलर का पैंट पहना हुआ है।

यह एक नदी है और शाम का टाईम लग रहा है सूरज डूबा हुआ नज़र आ रहा है कुछ लोग अ गाड़ी लेके खड़े हैं।

एक आदमी गाड़ी के पास खड़ा हुआ है दूसरा आ आदमी जा रहा है और एक पेड़ भी है।

एक आदमी अपनी कार ठीक कर रहा है उसने डिक्की बॉक्स गाड़ी का खोला हुआ है।

और इस बंदे ने वाइट कलर की शर्ट और ब्ल्यू कलर का ट्राउजर पहेना है।

और जो कलरफूल कर्टेन है और लाईट आ रही है।

और पीछे से एक पेड़ भी दिख रहा है।

एक वाशरूम है और इसमें टॉयलेट भी लगा हुआ है और एक नल भी लगा हुआ है।

ये एक वॉटरफॉल है और यहां पे अह पेड़ है ग्रीन कलर के पेड़ है और पत्थरों के बीच से पानी आ रहा है।

आपनी उन बाजु ऊपर कीए हुई इस चीज़ का--

यह एक लाइब्रेरी है और यहाँ पे बहुत सारे बुक्स है शेल्फों में--

आ ओ हम्म डिफरेंट कलर्स की बुक्स है बैलून्स भी नज़र आ रहा है और शायद पेन भी साईड में है और एक आदमी अ बैठा है।

और म्म बहोत ही अच्छा और मिट्टी भी है बहोत ही अच्छी पार्क है।

ये एक दरिया है और इसमें दो गाय है।

और वो दोनों रस्सी से बांधी हुई हैं।

बहुत सारे पेड़ हैं पीछे ग्रीन ग्रीन पेड़--

और एक खुला आसमान है और धूप छाई हुई है।

कूलर भी रखा हुआ है और ए_ सी भी लगा हुआ है।

और कमरे में और भी चेयर्स लगी हुई हैं।

और बहुत सारी ग्रीन ग्रीन प्लांट्स है और धूप खिली हुई है।

स्माइल कर रहा है दूसरा भी उधर देख रहा है बीच में एक बच्चा भी है और वहाँ पर बहुत सारे पेड़ भी हैं।

लोग इन्हीं पेड़ों के साथ बैठ कर आनंद उठा रहे हैं।